ऊपर में बहुत सारा लाइट लगा हुआ है तो सफेद कलर का है।

इसके पास एक स्कैनर भी रखा हुआ है।

ये बहुत बड़ा हॉल है यहां एक बच्चा है यहां बहुत सारा टेबल कुर्सी लगा हुआ है।

यहाँ साइड में बिल्डिंग है जिसमें प्लस्तर नहीं किया हुआ--

साइड में बहुत सारा कांच का अलमीरा है जिसमें बहुत सारा दवाई का बॉक्स और कांच का डिब्बा रखा हुआ है।

कुर्सी भी लगा हुआ है।

यहां दूर में एक बहुत बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है उसके नीचे बहुत सारा बाइक लगा हुआ है।